और कार्टून में भी बहुत सारा समान है बगल में भी एक दुकान है मिठाई का हो सकता है काउंटर मिठाई का बना हुआ है अच्छा लग रहा है देखने में।

दुकान का समान लटकाया हुआ है और ए.टी.एम. खुला है।